अपोलो टायर्स का एक शोरूम दिखाई दे रहा है पेड़ लगा हुआ है बाहर ऊपर अपोलो टायर्स का--

पीला कलर का गेट लगा हुआ है और अंदर पोस्टर बने हुए हैं पोस्टर पे कुछ छपा हुआ है छोटी छोटी मशीने हैं एक दरवाजा दिखाई दे रहा है वो सामने से छोटा सा है।

एक नाइट व्यू दिखाई दे रहा नाइट व्यू में काफी लाइटे लगी हुई है एक बिल्डिंग बनी हुई है बिल्डिंग में ब्लू कलर की लाइट है स्ट्रीट लाइट अ लगा हुआ खंभा --

खाने बने हुए हैं एक साइड में रूम बना हुआ है छोटा सा जिसमें फूल लगे हुए हैं सीसा का दरवाजा है और एक नाम प्लेट लगी हुई है एक पंखा लगा हुआ--